इस फोटो में मुझे झूला दिखाई दे रहे हैं।

इस फोटो में मुझे स्टेशर मशीन दिखाई दे नहीं है।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

मस्जिद दिखाई दे रही है इस फोटो में मुझे लोहे का गेट दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे कांच का दरवाजा दिखाई दे रहा है।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

इस फोटो में मुझे कांच का डलवाजा दिखाई दे रहा है इस--

इस फोटो में मुझे एक लेस्टोलेंट दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे एक बला हॉल दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में मुझे कांच का खिड़की दिखाई दे लही है।

इस फोटो में मुझे एक हॉल दिखाई दे रहा हैं।

इस फोटो में मुझे यूनियन बैंक का ए_टी_एम दिखाई दे रहा है इस फोटो --

इस फोटो में मुझे सीनरी दिखाई दे रही है।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

फूलों की छजावट दिखाई दे रही है।

इस फोतो में मुझे बहोत सारे कुर्सी टेबिल दिखाई दे रहें हैं इस फोतो --